सामने एक काफी बड़ा किला है जो भूरे रंग की है दो आदमी खड़े हुए हैं जो काले रंग के कपड़े पहने हुए हैं।